ये एक साफ सुथरा तालाब है।

हाथ में ग्लव्स पहना है और कोट पहना है और जूता पहना है और ब्लू कलर का पेंट पहना है।

ये जो माल है बहुत ही साफ सुथरा बहुत ही अच्छा दिख रहा है जहां का लाइटिंग भी बहुत ही अच्छा है।

सामने ट्राइब्स इंडिया का चित्र है।

यहां एक बाहर में बोर्ड है जहां लिखा हुआ है ग्रीन नर्सरी ।

एक टेबल है उसके आगे दिया जला हुआ है।

इस पर कई देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है।

यह एक स्कूल टाइप का लग रहा है या फिर कोचिंग हो सकता है।

प्रज्ञा केंद्र है और डिजिटल सेवा भी है।

इंटरनेट कैफे कभी सुविधा है जेरॉक्स भी होता है।

बहुत ही अच्छा दिख रहा है और लाइटिंग भी अच्छा है।

छठे कटे हुए पेड़ भी हैं जो डिजाइन किए हुए हैं बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं।

टेबल भी ग्रीन कलर का है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है बिरयानी मसालेदार।

जमीन है उसमें मार्बल दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है और येलो कलर का लाइट भी है।

ये एक हिंदुओं का पूजा चल रहा है जहां बहुत सारे हिंदू महिलाएं और पुरुष भी हैं।

एक साधु भी बैठे हुए हैं जो कि साफ सफाई का काम कर रहे हैं या फिर पूजा भी कर रहे हैं।

और एक नीम का पेड़ है और बहुत टाइप का पेड़ है इसमें छोटे छोटे पौधे हैं।

एक छोटा मोटा होटल है।

मिरिंडा पेप्सी सेवन अप स्टिंग वो सब रखा हुआ है।

और यह लोग दिल डील डाल कपड़ा पहन के योगा कर रही हैं।

रोड के साइड जो है बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं जो की बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं।

इसमें यादव महाविद्यालय लिखा हुआ है।

ये एक ऑफिस टाइप का लग रहा है इसमें चेयर है और एक बड़ा जैसा टेबल है।

और इसमें इलेक्ट्रीक लाइट कंडक्टन ये भी है।